यहाँ पर बहुत सारे सोफ़े कुर्सीया रखे हुए है ये सब लोग देख रहे है मूर्तिया भी बनी हुई है बहुत सुंदर सुंदर चिजे --

गमलों मे पत्ता गोबी लगी हुई है बहुत सारे गमले रखे हुवे है पीछे भी गमले रखे हुवे है आगे भी गमले लगा के हुवे है यहाँ बहुत सारे गमले है।

डलिया ट्रे प्लेट बड़े बड़े डिब्बे अहम गमले बहुत सुंदर सुंदर रखे हुए है और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है।

उसके अगल बगल पेड़ पौधे है बहुत छोटे छोटे है और कुछ गमले मे भी लगे हुवे है एक खजूर का पेड़ भी बहुत ही सुंदर लग रहे है बहुत ही बड़ा ग्राउंड है।

सामने भी बहुत सारे अमम व्यक्ति दिखाई दे रहै है बहुत सारे व्यक्ति दिख रहै और आगे बहुत सारा हरियाली है छोटी छोटी पेड लगे--

बहुत सारे भी दिखाई दे रहे है और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

उसमे कांच के कांच के विंडो लगी हुई है भगवा सीधा जा रहा है एक रोड के पास आ रहा है एक कार खड़ी हुई है।

बहुत ही सुंदर सा लग रहा है पीछे दिखाई दे रहा है कुछ घर भी दिखाई दे रहे है।

लाइटे जल रही है और बहुत सारी कुर्सिया ही कुर्सिया रखी हुई है और बहुत ही सुंदर सा लग रहा है।

यह बहुत बड़ा जंगल है जंगल बहुत सारे पेढ है बहुत सुंदर सुंदर से लग रहे है नीचे कुछ चट्टण से है।